और इस मैदान में बहुत सारे बच्चे है।

और एक कार का बोनट खुला हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप है।

इसमें डॉल की कई वैरायटी है और बेबी डॉल भी हैं।

यहां पे एक कच्ची मिट्टी का रास्ता है जो उतना पक्का व्यवस्थित रोड नहीं है।

कुछ गुब्बारे नीचे है गुब्बारों के ऊपर की छत पे ए.सी. लगी हुई है ।

दुसरे छोर पे छोटी-छोटी बहुत सारी दुकानें हैं।

यहाँ पे एक पत्थरों का गुफानुमा आकृति है जिसमें एक आदमी जा रहा है।

और इसके शॉप के बहार के डेस्क पे बहोत सारी क़िताबे हैं जो लाल कलर से कवर है।

कुछ ने माथे पे अ माथे पे को कवर भी किया हुआ है दो आदमी तीन आदमियों ने ।

दो पुतलो को जेन्ट्स के कपड़े जैसे शर्ट और पेंट पहनाए गए है।

जिसपे लोहे का गेट लगा हुआ है और भी और यहाँ पे दोनों गेट अभी खुले हुए है।

ट्रैक के बीच में एक गमला है जिसमें एक पौधा है।

सिस्टर के सामने स्कूल के क्लास का आ क्लास कक्षाएँ है जो एक कतार से है बगल में एक गमला है ।

नीले कलर का शर्ट डाला हुआ है।

हरे-भरे पेड़ बड़े-बड़े लम्बे पेड़ भी हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं।

हरे कलर का पूरा कार्पेट ग्राउंड में बिछा पड़ा है।

गाय के पीछे एक महिला और एक पुरुष है पुरुष ने माथे पे कपड़ा बाँधा हुआ है।

जो घर है वो कच्ची मिट्टी का है।

जिससे उसको ऊपर उठाके वो मैकेनिक उसमें काम कर रहा है।